आगे रोड पे गाड़ी रखी हुई है एक आदमी खड़ा हुआ है एक आदमी गाड़ी चला रहा है ऊपर लाइट के खंभे लगे हुए है उनमे लाइट की डोरियाँ है।

एक बाल्टी रखी हुई है आस-पास और भवन है बाउंड्री बनी हुई है बहोत सारे पेड़ है।

यहाँ पे बड़े-बड़े पहाड़ है आगे पेड़ है छोटे-छोटे घास है पहाड़ पे भी बोहत सारे पेड़ है ।

एक ट्रेक्टर रखा हुआ है जीप रखी हुई है मोटरसाइकिले रखी हुई--

नीचे छोटे-छोटे घास है आस-पास छोटे-छोटे पौधे है बड़े-बड़े पेड़ है पेड़ -पौधों में--

यहाँ पे एक बड़ी सी नदी है नदी में एक बोट है बोट पे दो लोग बैठे हुए है एक बोट चला रहा है वो बैठा हुआ है एक आदमी खड़ा हुआ है ।

अम्म बॉटलें रखी हुई है एक थर्मामीटर रखा हुआ है एक किताब रखी हुई है उसपे एक पेन से कुछ लिख रहा है आस-पास बहोत सारे आदमी ख़--

नीचे बहोत सारी स्कूटीयाँ रखी हुई है गाड़िया रखी हुई है एक कार रखी हुई है।